खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं और शासकीय इमारत में सूचना फलक वहां पर लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

लड़के लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

वो बेल्ट भी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं।